यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है। स्कूल के बाहर एक सीढ़ी रखी हुई है। हरे-हरे पेड़ लगे हुए है। रेड कलर से एक नेट बिछी हुई है। एक पाइप लगा हुई जो कि पीले कलर से। यहाँ पर क्रीम कलर से पुता हुआ है।

यहाँ पर एक जिम बनी हुई है। जिम के पास बोहोत बड़ा आइना लगा हुआ है। जिम का गेट ब्लैक कलर से बना हुआ है। पीछे बोहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं और एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बोहोत सारी --

यहाँ पर अनार और केले आम संतरा रखे हुए हैं। यहाँ पर फल फूल कागजों के ऊपर रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक किला बना हुआ है। किले के पास झाड़ियाँ लगी हुईं हैं और कुछ हरे कलर से पेड़ लगे हुए हैं। किरा किला बहोत पुराना बना हुआ है जो कि --

यहाँ पर बोहोत सारे पत्थर डले हुए हैं। यहाँ पर एक एक किला बना हुआ है जोकि टूटा-फूटा है। यहाँ पर छोटी-छोटी सी घांस लगी हुई है। यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है। यहाँ पर --

छोटा- सा गेट लगा हुआ है जोकि ब्लैक कलर से ओ यहाँ पर एक ब्लैक कलर से गाड़ी खड़ी हुई है एक व्हाइट कलर से बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे दुकानें खुली हुई है उन दुकान --

यहाँ पर एक रेल्वे स्टेशन का रेल्वे स्टेशन बना हुआ है जहां पर एक रेल गाड़ी भी है। यहाँ पर एक --

पत्ता कलर से एक बाउंड्री बनी हुई है जहाँ पर एक म्मम जहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक स्टील की टेबल डली हुई है जहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहोत सारी भीड़ हैं। यहाँ पर ऊपर छत पर --

और अंदर व्हाइट कलर से यहाँ पर गोदरेज भी रखी हुई --

यहाँ पर पत्तियों से सजावट हो रक्खी है। यहाँ पर दीवाल ब्लैक कलर से बनी हुई है। यहाँ पर आम संतरा अंगूर और बहोत सारे फल-फूल रखे हुए हैं।

कुछ सूखे पेड़ भी लगे हुए हैं यहां पर सूखे पत्ते भी लगे हुए हैं यहाँ पर जंगल में कुछ पेड़ कटे हुए भी डले हुए हैं।

और मिरर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बहोत सारी मशीन रखी हुई हैं और एक व्यक्ति मोबाइल लिए हुए है जो जोकि मोबाइल पर बात कर रहा है और एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

यहां पर जो सफेद कलर से और पिंक कलर से बोन बाउंड्री बनी हुई है। यहां पर एक सफेद कलर से और पिंक कलर से एक अ बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग के बाहर --